और अ मतलब शुद्ध है बिल्कुल शीशे में पैक है। शीशे के कांउटर में पैक है।

की पार्किंग या सोसायटी वगैरा बैंक वगैरा मे नीचे पार्किंग होती है। पार्किंग हॉल होता है। वहां पर लगा है ये पार्किंग एरिया है। गाड़ियां खड़ी है यहां पर बहुत अच्छी- अच्छी महंगी -महंगी गाड़ियां खड़ी है।